और लाइक मेन टाउन और मैन विल्लेजस की जो अभी होती है वो यहाँ पे अवेलेबल --

पुरानी मस्जिद की अ यह फोटोस लग रही है क्यूकी इसमें जो पेंटिंगस है वो एरबिक स्टाइल की है और --

और ऊपर से एक छोटी-सी ब्रीज है जिसको केनाल भी बोल सकते है फोर सपोर्टेड --.